अम लोग खड़े हुए हैं बाइक भी खड़ी हुई है जो काले रंग की है उसमे बहुत सारे--

ट्रे में रखी हुई हैं तस्वीरें बहुत सारी अलग-अलग हो--

कलर है सफेद में बहुत सारे लोग भी है ।

और पीला वस्त्र पहने भी है ।

इस तस्वीर में बहोत सारे सिलेकर---

यह तस्वीर में बहुत सारी छोटे-छोटे पेड़ ---

गाये है जो लाल रंग की है ।

तस्वीर में स्विमिंग पूल का है चु--